और खुला आसमा दिख रहा है ग्रीन ग्रीन पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं नीचे ईंट पटी हुई दिख रही है।